बड़ा तालाव है। यहाँ पे नाव भी दिख रही है बोहोत बड़ी।

एंड पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक बैंक है बैंक के अंदर बहोत ही अ अ सारे वो दिख रहे है एण्ड विंडो भी दिख रही है एक बाइक भी खड़ी हुई है।

यह एक रूम है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि योगा प्रैक्टिस कर रहे है एक सर भी खड़े हुए है फैन भी लगे हुए है।

यहाँ पे बोहोत सारी ऑटो खड़ी हुई हैं। टैम्पो खड़ी हुई हैं। बस खड़ी हुई हैं।

एक मूर्ति दिख रही है। अम्म्म राधा और कृष्न की |

यहाँ पे एक रूम है यहाँ पे सभी लोग योगा कर रहे है व्हाइट कलर की पहने हुए है। ड्रेस एण्ड फैन भी लगा है।

विंडो भी दिख रहे है ।

एंड यहाँ पर बोहोत सारी किचल की दिख रही है। एक बॉय्ज़ है जो कुछ कर रहा है। पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक हॉल दिख रहा है। लॉन एंड डेकोरेट भी किया गया है।

जहाँ पे बहोत सारे चेयर और टेबल दिख रहे हैं। पेड़ भी दिख रहे हैं। बिल्डिंग भी दिख रही हैं।